छोटा में पौधा दिख रहा है खिड़की दिख रहा है।

फोटो लगाया और दीवाल पर दिख रहा है --

तस्वीर में घर दिख रहा है।

आदमी दिख रहा है पेड़ पौधा दिख रहा है।

खिड़की दिख रहा है गाड़ी दिख रहा है।

इस तस्वीर में घर दिख रहे हैं बैडरूम दिख रहे हैं।

टेबल दिख रहा है बर्तन दिख रहा है।

मैट बिछाया दिख रहा है गेट दिख रहा है।

आदमी बैठा हुआ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है ब्लू नीचे जमीन दिख रहा है।

पौधा दिख रहा है घास दिख रहा है।

अगल बगल आदमी दिख रहा है घर दिख रहा है।

घर दिख रहा है दो घर दिख रहा है।

मैट दिख रहा है बिछाया हुआ सैंडल दिख रहा है।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

तीन-चार खिड़की दिख रहे है पिल्लर दिख रहे है जमीन दिख रहा है वाइट पुट्टी दिख रहे हैं।

जोड़ दिख रहा है पेड़ पौधा दिख रहा है।

आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

सामने गेट दिख रहा है बंद--

खिड़की दिख रहा है दो भिन्न लेटर दिख रहा है।

छोटा-छोटा बाल्टी रंग बिरंग के डटकाया वो दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

कैन दिख रहा है दिख रहा है उसमें समान दिख रहा है।

बहुत बढ़ रहा है जमीन दिख रहा है।

जूता दिख रहा है पहना हुआ--

अगल-बगल खास दिख रहा है।

औरत दिख रहा है लंबा पूल दिख रहा है पानी का लहर दिख रहा है।

कुर्सी दिख रहा है टेबल दिख रहा है चिमकी में फूल रंग बिरंग का दिख रहा है।

टूल दिख रहा है पुट दिख रहा है।

जमीन पर छोटे-छोटे आदमी दिख रहे हैं।

भगवान का फोटो दिख रहा है माला चढ़ाया हु--

ऊपर घड़ी दिख रहा है झूमर लटकाया हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है आदमी दिख रहा है टेबुल दिख रहा हैं।

कुछ लिख रहा हूं कॉपी दिख रहा है।

अगल-बगल घर दिख रहा है।

ढेर सारे कॉपी किताब रखा हुआ दिख रहा है।

गेट दिख रहा है ए_सी दिख रहा है।

कुर्सी दिख रहा है टेबल दिख रहा है।

देवाल पर छोटा-छोटा पोस्टर लगा हुआ है।

नीचे छोटा-छोटा घास दिख रहा है।

अगल-बगल घर दिख रहा है खिड़की दिख रहा है।

दो-तीन आदमी दिख रहा है।

पोस्टर दिख रहा है पिज़्जा लिखा हुआ दिख रहा है ।

तीन आदमी दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

टेबल दिख रहा है कॉपी किताब दिख रहा है।

अगल-बगल घर दिख रहा है ।

ऊपर आसमान दिख रहा है।

घर में खिड़की दिख रहा है।

तस्वीर में घर देख रहा है।

पौधा दिख रहा है पेड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

आगल बागल घर दिख रहै है पेड़ पौधा दिख रहै है।

ढेर सारी लाइट बर रहा है।

लड़कियां सोते हुए दिख रही है।

जमीन दिख रहा है गेट दिख रहा है।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है पोस्टर दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है रंग बिरंग के बैलून टांगा हुआ दिख रहा है।

सामान दिख रहा है स्टैंड में--

एसी दिख रहा है बॉल बढ़ रहा है।

टेबल क्रोशी दिख रहा है आदमी दिख रहा है।

लोहा का टावर दिख रहा है।

मशीन दिख रहा है लोहा का---

तस्वीर में घर दिख रहा है।

बीच में रास्ता दिख रहा है नाव दिख रहा है।

नीचे घास जमा हुआ है।

ऊपर आसमान दिख रहा है अगल-बगल पेड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में आदमी दिख रहा है।

ढेर सारा अगल-बगल घर दिख रहे है।

शीशा दिख रहा है गेट दिख रहा है।

तस्वीर में रोड दिख रहा हूं।

अगल-बगल ढेर सारा आदमी दिख रहा है।

गाड़ी दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

तस्वीर में लड़की दिख रही है।

तस्वीर में लोहा का पैप दिख रहा है बैग दिख रहा है।

ऊपर ब्लू आसमान दिख रहा है।

ढेर सारी आदमी दिख रहा है।

ब्लू आसमान ऊपर दिख रहे हैं।